पूरा मस्ती करते है यहां पे बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ भी घूमने आते हैं।

और बहुत सारे दुकाने लगे हुए हैं।

बहुत सारे लोगों की ड्यूटी भी है यहा पे कोई समरो होने वाला है बहुत सारे लोह आए हुए है उस समरो को देखने और यहा पे काफी अच्छी सजावट की गई है|